हरा भरा गच है और सामने में एक बड़ा सा गच है दो चार डोंगा खड़ा है।

और कुछ लोग अम हरा क कपड़ा पहने हैं।

आखे पाखे बड़ा बड़ा गच नज़र आ रहा है बड़ा सा पड़ियाँ है।

मूर्ती का अअअ कलर अ ग्रे कलर का है।

बहुत सारे गेंडु का फुल धरा है गेंडुओ का रंग हल्दिया है और कुछ लाल--

हुआ है और ब्लू_कलर का हुआ है सामने में एक पूल धरा है य ऑरेंज_कलर का--